और सामने कोई गाय या भैंसक जैसे कुछ चेहरा दिखाई दे रहा--

एक मंदिर दिखाई दे रहा है जो काफी सजा हुआ है। और सामने--

एक लड़का फओरा लिए हुए हैं और एक लड़का डंडा लिए हुए हैं कुछ-अ घास में दिख रहा है।

और कुछ लोग बर्फ में भी बैठे हुए हैं अब ऑरेंज कलर का बच्चा कपड़ा सा लगता है ।